ये एक ऐसा जगह है जहाँ रेल्वे मतलब क्रॉसिंग होता है या पास करता है वो दिया जाता है जो यहाँ --

एक पोस्टर लगा हुआ है पता नहीं चल रहा है की क्या चीज का पोस्टर है।

बोहोत अच्छा लग रहा है सारा --

इस जगह लगता है चिड़ियाघर का जगह हो यहाँ पे हिरण है।

एक बोहोत बड़ा ना आथी है। लगता है जैसे ऑफिस है या कॉलेज मतलब हर इस स्कूल बोहोत चीज का बात ये सब क्या है पता नहीं चल रहा --

बहोत सारा जंगल भी है उधर बहोत सारा पौधा भी है जैसा की आम का पेड़ हो या केला ओला --

और यहाँ पे रास्ता भी बना हुआ है।

और यहां पे देखिए कितना अच्छा से बहुत सजवाट ईटा का किया हुआ है।

और यहाँ पे आप रह भी सकते है पिकनिक के लिए घूमने ने जा भी सकते है ।

वहाँ बोहत सारा जैंट्स हैं जो काम करने मे अभी व्यस्त है ।

ये सब अच्छा नहीं बात है आप चाहे तो पानी का बचत करिए।

यह एक पेट्रोल पम्प है जहाँ पेट्रोल लिए लेते हैं दे देते हैं ऐसे देते नहीं हैं बहुत दूर आखरी मे उन्ही लोगों को मिलता है |

किसी का जयमाला हो या कुछ भी हो वही करने के लिए ना यहाँ पर सजावट पर ल लड़का-लड़की नहीं हैं ये कंफ्यूजन वाली बात है और यहाँ पे देखिए बहोत सारा फूल भी है और बहोत सारा सब --